यह एक जिम दिखाई दे रही जिम में कई सारे मशीन दिखाई दे रहे तथा एक लड़का जो एक्सरसाइज करता हुआ दिखाई दे रहा है तथा एक लड़का वहाँ खड़ा दिखाई दे रहा है।

यहां एक शॉप दिखाई दे रही है जिस पे एक पंप प्लेट लगा है जिस पे लिखा है अनमोल।

फंक्शन हो रहा है वहां पर स्टेज लगा हुआ है कुर्सीयां लगी हुई है| स्टेज पर लाइटें लगी हुई है बहुत सारे लोग बैठे हैं ये एक खाली मैदान दिखायी दे रहा है| जहां सारे कुर्सी लगे दिखाये दे रहे हैं और सारे लोग भी दिखाये दे रहे हैं|